दृश्य मे हमे एक महल दिखाई पड़ रहा है महल देखने मे काफी बड़ा है और साथ ही साथ यहा पर बहुत सुंदर सा बनाया गया है खिड़की दरवाजा।

और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की ये कोई घुमने की जगह हो यहा पे सड़क काफी बड़ा है दुरे में बड़े बड़े पेड़ भी दिखने को मिल रहे है ये द्रश्य अधभूत लग रहा है।

और दुर देखने पर हमे बड़े बड़े पेड़ और सूरज जो की डूबता हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें रास्ता दिखाई दे रहा है और रास्ते के साइड में हमें एक बड़ी सी इमारत देखने को मिल रही है यह टाउन हॉल है इसका--

इस दृश्य मे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है और उसके आस-पास दुकान दिखाई दे रहे है यहा पर हमे कपड़े की दुकान दिख रही है।

जिसके आगे हमे एक पुतला लगा हुआ दिख रहा है जिसमे हमे कपड़ा पहनाया नजर आ रहा है साथ ही साथ और कही बिल्डिंग है।

ये एक इमारत भी है और यहा पर हमे ऊपर गुंबज भी बना हुआ नजर आ रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की यह रास्ते का द्वार हो यहा पर हमे कई घर देखने को मिल रहे है।